ये तस्वीर किसी डेम की नजर आ रही है इसके अंदर कुछ चट्टानें भी नजर आ रही है।

और कुछ मसालों के पैकेट भी रखें हुए दिख रहे हैं।

घिरी हुई है पेड़ पौधों के बीच में।

और ये गिरजा घर है हरे और लाल--

समारोह की नजर आ रही है।

ये तस्वीर के अंदर एक बड़ा स चट्टान भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर के अंदर कुछ चीजें --